यह एक गोल्डन नर्सरी है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें--

बहुत सारी खिड़की है इसमें सीढ़ी भी है।

दो साइकिल खड़ी है साइकिल के पास एक व्यक्ति भी है।

यह एक मंदिर है जिसके आगे बहुत बड़ा फील्ड है।

दे रहा है यहां सामने दीवाल पे एक--

यहां एक गाड़ी खड़ी है जिसपे अलग अलग--

दिख रही है जिसमें जाने के लिए सीढ़ी दिखाई--

में एक पोल भी दिख रहा है।

दिख रहा है रिसेप्शन के पास दो व्यक्ति खड़े हैं।